एक व्यक्ति सफेद रंग की कमीज तथा काले रंग की जीन्स पहने हुए खड़ा है सामने की तरफ दिवार साफ देखी जा सकती है।

ऊपर की तरफ बैगनी रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सफेद रंग के सिहाई से लिखा हुआ है जिसके सा--

चार बच्चो ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए है तथा हाथों में तिरंगा लिया हुआ है पीछे की तरफ टेंट भी देखा। --

काली तथा लाल रंग की ग्रेविंग की हुई है साथ ही में दोनों तरफ का फर्श भी नजर आ रहा है जिसके --

इन्होने फौजी के रंग के कपड़े पहने हुए है तथा एक लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहनी--

एक सफ़ेद रंग की ईमारत साफ देखि जा सकती है जिसके बाहर की तरफ--

काफी हरियाली है तथा कुछ छक्के भी लगाए।

पीछे की तरफ आसमान भी दिखाई दे रहा है तथा आगे की तरफ जगह भी नजर --

बोर्ड लगा हुआ है जिसके पास ही में दो कुर्सियाँ रखी हुई है कुर्सियों के पीछे की दीवार --

रंग का नज़र आ रहा है और उसके पीछे की तरफ--

ये एक जिम सा नज़र आ रहा है जिसके अंदर काले तथा लाल रंग की मशीन रखी हुई है।

एक तीन शीशे नजर आ रहै है जिनके सामने तीन काले रंग के कुर्शिये रखी हुई है।